यहाँ कुछ लोग है दो लोग खुदाई कर रहे है खेत में हरी-भरी खेत है आसपास पेड़ लगे हुए है कुछ लोग छाता लिए हुए है।

यहाँ पर कारपेट बिछी हुई है ग्रीन कलर की जहाँ पर काफी सारे लोग बैठे हुए है कुछ औरतें है कुछ आदमी है और यहाँ पर पंडित भी है जो की ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए है।